बहुत सारे खिलौने भी आए हैं और यहीं बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें आएंगे और घर पे जाएंगे जो कि यह मेला बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है --

यह एक बोहोत ही सुंदर यहाँ सब फूल की लड़ियों से सजाया गया है जो कि यह देखने में बहोत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर ये जो बोहोत बड़ी गाड़ियां --

यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारत बनाई गई है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान भी है जो कि यहाँ सारे सामान मिलते हैं। टी.वी. भी है डिश भी --

और इस के अंदर गमले में पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे --